और पानी के किनारे पे बैठल बारिश ह और ईका नज़ारा कुछ लोग लेटे रहल छे चेयर लगल बा बैठे के खातिर घास वृक्ष भी बा आनंद लेने खातिर ।

है बहुत ही बरा एक एक दुकान देखे के मिला कुछ ब्लाउज टांगल बा कुछ वाइट कलर के बा कुछ हरे रंग के बा ऊपर भी कुछ कपड़ा रखल बा।

यहां बहुत सारा लोहा के मशीन तरह -तरह के लागल बा।

लगल बा और मोती के जइसन दुपट्टा बटे।

ओकर पीछे देवाल वा काला कलर की मूर्ति वा।